ये पेड़-पौधे का बागान हैं जो काफी हरी --

और जीरोक्स भी होता यहाँ पे --

पंखा वगैरा भी मिलता है यहाँ पे और --

यहाँ पे है एक तालाब है।

जो इस टोटों मे समान लाके --

अपने-अपने थाली से लेकर कहीं पूजा करने जा रहें हैं।

अच्छा से पेंट किया हुआ है।

यहाँ पे एक व्यक्ति है जो अंधेरा में दिख रहा है थोड़ा सा।

काफी मस्त होता है अ पेटीएम मे शीशे लगे हुए है।

और इसके बगल में एक मस्जिद भी है जहाँ --

रखा हुआ है टेबल रखा हुआ है और बहुत --

और इसका वर्क काम है जो पेड़-पौधों मे पानी देखती है।

काफी खूबसूरत लगता है देखने मे दुकान और --

बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे और किसी के पास तराजू रखा हुआ और--

यह एक जवाहर नवोदय विद्यालय है।

बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर भीड़-भाड़ है ज्यादा दिख रहा है।

बहुत सारे खिलौने आयें हैं समान बेचने के लिए।